और रोड पूरा चिकना है एक घर भीदिख रहा है बड़ा जैसा उसके ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है --

और नीचे हरा रंग का चटाई बिछाया गया है ।

और एक आदमी सादा रंग का सर्ट काला रंग का पेंट पेहेन कर के और सादा रंग का टोपी लगा कर के --

बहोत सारा कुर्सी भी लगा हुआ है खाना खाने वाला डाइनिंग टेबल दिख रहा है।

उसका एक गेट भी दिख रहा है।

लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है कुछ चेयर में बैठा हुआ है।

लाल रंग का है काउंटर और एक दिया भी जला हुआ है।

लकड़ी का और बहोत सारा मूर्ति रखा हुआ है।

और एक गेट भी लगाया गया है हरा रंग का गेट देख रहा है।

और दिन का समय हैं उसके पीछे में बहुत सारा घास ही दिख रहा हैं --

दिन का समय है एक बड़ा सा चट्टान दिख रहा है उसमें बहोत सारा घास उगा हुआ है।

घास उग गया है बादल भी देख रहा है ऊपर में आसमान----

एक जिम है जिसमें एक लड़का अ हाफ़ सैंडों गंजी पहना हुआ है काले रंग का काले रंग का ट्राउसर पहना हुआ है हाथ में काले रंग का घड़ी लगाया हुआ है और --

एक होटल है जिसमें बहुत सारा खाना वाले टेबल लगा हुआ है मार्बल का टेबल बना हुआ है कुर्सी भी बना हुआ है मार्बल का --

बहुत सारा लाइट लगा हुआ है बहुत सारा कुर्सी भी लगा हुआ है चार ठो कुर्सी है चार ठो कुर्सी इधर है दो ठो दो ठो कुर्सी करके रखा गया है औ--

बोहोत सारा लाइट लगा हुआ है पीला रंग का लाइट जल रहा है ऊपर में बोहोत सारा है और तितली--

और तितली का डिजाइन का लाइट लगा हुआ है बीच में।

और एक तो दरवाजा हैं और एक बालकोनी भी दिख रहे --

एक रूम है उसमें ए_सी लगा हुआ है उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है सैलून जैसा दिख रहा है।

एक स्टेज देख रहे उसमे एक आदमी खरा है जो फराग पहेनकर के खरा है और निचे धोती पना हुआ है साधारण का अपना एक हात उठाया हुआ है इ --

एक मस्जिद जैसा दिख रहा है ऊपर में कुछ चोंगा भी लगा हुआ है दो ठो--

दो ठो लड़की है जो फोटो क्लिक कर रही है और बाल खोला हुआ है उसका एक हाथ में एक लड़की का फोन रखा हुआ है दो ठो उंगली दिखा रही है और एक --

एक आईना है बहुत बड़ा और उसम उसके सामने में बहुत सारी औरत लोग बैठी है और एक--

और हाऊ डार्क गुलाबी में पाजामा पहनी है चटाई बिछा कर के योगा कर रही है आइना में देखकर।

दिन का समय दिख रहा है और एक क खस्सी भी टंगा हुआ है एक बड़ा सा घड़ी भी दिख रहा है बाहर में एक छोटा सा लाइट लगा हुआ है खस्सी का--

जेस्‍टोरेंट उसके नीचे में प्‍लेस लिखा हुआ है और सीढ़ी दिख रहा है उसमें बहुत सारा लाइट लगा हुआ है और बहुत सारा

बहुत सारा मोमबत्ती एक जगह में रखा हुआ है ऊपर में लाइट भी लगा हुआ है जो हरे रंग का दिख रहा है ऊपर से लाइट --

साड़ियां पहनी हुई है बोलो रंग का पाड़ बना हुआ है।

आसमानी रंग का और बहुत सारा आदमी लोग जो टोपी लगाकर काम कर रहे ऊपर में बहुत सारा लाइट लगा हुआ है ।

ए_आर_आई_एच_ए_एन_टी और उसके नीचे में लिखा हुआ है डी_आर_ई_ए ।

पेट्रोल का दुकान दिख रहा है बहुत सारा पेट्रोल रखा हुआ है लाल रंग का है सादे रंग का है भूरे रंग का है उसके बगल में एक र्पोस्‍टर लगा हुआ है ।